इस फोटो में एक व्यक्ति एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और वो किताब पढ़ रहा है यहां पे दो लोग खड़े हैं वो लोग भी किताब को किताब की तरफ --

और यहां पे एक पंखा भी है एक अ पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक कपड़े के दुकान को दिखाया गया है जहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति के पास साइकिल है एक व्यक्ति इस बिल्डिंग से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसके हाथ में लाल कलर का--

बैग है उसके हाथ में लाल कलर का झोला है बगल में एक मारुति सुजुकी गाड़ी भी खड़ी है।

इस फोटो में किसी खेत की जगह को दिखाया गया है जिसमें पीले-पीले बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं कुछ महिलाएं भी कुछ--

और एक व्यक्ति के कंधे पे--

और हॉल में तीन-चार दरवाजे हैं दरवाजों में--

और दुकान में सामने कुछ सामान रखा हुआ है।

और दुकान के सामने एक बोर्ड भी ल लगा हुआ है जिसमें--

और ये अपने हाथ में कुछ यंत्र लेकर के यहां पर कुछ काम करने में लगा हुआ है।

अ बॉक्स तरीके का बनाया गया है और सामने जो है पानी पीने के लिए--

और बगीचे में एक जो है लड़की भी घूम रही है और यहाँ पे एक सुंदर सा मोर है।

और अगल-बगल में बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं।

और बहुत सारे फूल भी लगाए गए हैं।

जो कि वाइट कलर के ड्रेस में है।

और देखने में यह मस्जिद प्रतीत होता है।

इस फोटो में एक मेले का सीन दिखाया गया है।

और इस मंदिर में बहुत सारे रंग भर के--

इस फोटो में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है।

नजरिया देने में कामगर दिखाई दे रहा है।

क्रिश्चन म का स्थान निवास लगता है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ आजू-बाजू में पेड़-पौधे भी हैं।

और सामने में यहां एक व्यक्ति भी खड़ा है--

यहां पे बहुत सारे टेबल कुर्सी लगाए गए हैं।

जिसको लेकर ये मैकेनिक कार को बनाने में लगा है।

कुछ लोग इस जिम हॉल में अभी भी हैं यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं वो लोग जिम कर रहे हैं और जिम से रिलेटेड ये एरिया है।

इस फोटो में एक लड़की दिखाई दे रही है।

जो कि कुछ काम करते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पे महिलाओं से रिलेटेड सारी चीज रखी गई है ।

और यहां पे-ए जो है हैंड --

सैनिटाइजर भी रखा हुआ है और इसके साइड में--

सामने में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे मार्ट डॉट कॉम लिखा हुआ है।

इस फोटो में कुछ घर दिखाई दे रहा है।

और घर के बगल में नदी है और नदी में बहोत सारे जो है नाव हैं।

इस फोटो में एक व्यक्ति जो है अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है।

और ये आदमी अपनी बाइक पे बैठा-बैठा लगातार किसी को जो है--

खिलौने की दुकान है उस पे न्यू महावीर टॉयज लिखा हुआ है।

इस फोटो में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है चारों ओर बर्फ ही है.

और अ बहुत सारे लोग भी यहां पे स्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक मग है जिसमें पानी रखा हुआ है।

और कुछ डॉग्स जो हैं इस रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं।

बहुत सारे पेड़-पौधे यहां पे लगे हुए हैं।

रखे हुए हैं सामने एक डिस्क भी लगाया गया है।

बहुत सारे कपड़े इस दुकान में जो है रखे हुए हैं।

जिसमें सामने एक ब्लैक बोर्ड है वाइट बोर्ड है।

इस इमेज में गार्डन का सेन दिखाया गया है।

लोग बैठे हुए हैं चेयर पे कुछ बच्चे जो हैं यहां पे झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ बच्चे योग कर रहे हैं।

यहां पे कुल मिला के सात बच्चे हैं जो योग कर रहे हैं कोई येलो टी-शर्ट में है।

इस फोटो में एक जिम सेशन को दिखाया गया है।

अप -डाउन होता है वो शिस्टम है।

चेयर पे बैठी हैं कुछ काम कर रही हैं।

कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं।

और कुछ मोटरसाइकिल वाले जो हैं पेट्रोल लेने के लिए--

खड़े हैं सामने भारत पेट्रोलियम का--

यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं।

और यहाँ पे एक महिला भी है जोकि हाथ में झाड़ू लेकर के--

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग है।

उसपे एक बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पे यूको बैंक लिखा हुआ है।

कुछ झूला वगैरह भी लगाया गया है और इस साइड कुछ मंदिर नुमा टाइप का बनाया गया है।

कुछ लोग जो हैं यहाँ पे।

चीज है अ मतलब चार महिलाएं जो हैं--

ये जो सारी चीजें हैं ये म अ महिलाओं का श्रृंगार है यहाँ पे कान का झुमका है हाथ की पॉलिश है।